बहोत बड़ा घर है बहोत सुंदर सुंदर टाइल्से लगी है बहोत खिड़की लगी हैं।

पायल है कंगन है सोने की दुकान में बहोत सारे सामान रखी है चेयर भी रखा है एक से एक समान लोक चूड़ी कंगन झुमकी हार--

जिसको आदमी पेहनता हैं लेडीजे के सामान है।

दरवाजा उ डबल मंजिल का मकान बना है।

गुलाबी ऑरेंज कलर का लाल हरा पीला नीला काला ब्लैक व्हाइट --

नीले कलर का दरबाजा लगा है दुकान की अन्दर उसमें पोश्ट भी मिलती हर एक चीज--

छोटे छोटे बच्चों की खाने की टॉफी नमकीन बिस्किट लेते हैं ऊपर लाइट लगी है चांदनी लगी बहोत बड़ी सी दुकान--

पंखा लगा है कुरकुरे बिस्कुट नमकीन टॉफी जूस ऊस सब मिलता है।

खिड़की लगी है कांच वाली है। आखिर सुबह शाम --

खाने के ऊपर टाइल्स लगे हैं अगल बगल तीन चार पंखे लगे हैं रोशनदान हैं।

नारियल फोड़ी जाती है भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।

बहुत सा आसमान है आसमान में सूरज दिखता है चांदनी होती है।

ऊपर ली म घर बना है मकान पोस्टर लगा पोस्टर मे--

वहां आते हैं यहां गेट में खिड़की है रोशनदान है ऊपर नीचे मॉल कान दरवाजा कांच बार--

इस सीट की खिड़की लगी हुई ऊपर खिड़की लगी है सीट लगी है दरवाजा लगी है लाइट लगी है गाड़ी ढांड है तीन इंसान बनवाने आ--

और ए_सी लगी है ए_सी मे थाड़ होते अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है गर्मी की मौसम--